दिन का समय है।

ये पार करने की कोशिश कर रहे हैं।

और सामने हरियाली भी है।

यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं।

टेबल बेंच के शेप में है।

यहां पर एक व्यक्ति तरह तरह के रंग बिरंगे फूल बेच रहा है।

यहां पर एक कुत्ता इलाज कराने आया है।

यहां पर लाइट जल रहा है।

यह प्लेटफार्म नंबर वन की तस्वीर है।

यह दृश्य किसी नदी का है जहाँ पे कावड़िया लोग पानी भर रहे हैं।

ये सारे कावड़िए पुल के नीचे खड़े हैं।

एक आदमी लुंगी पहन के झोला लेकर जा रहा है।

यह दो लड़कियों की फोटो हैं।

दोनों ने काले कलर के टॉप पहने हुए हैं।

और सामने बहुत सारा बाइक लगा हुआ है।